एक सलून है जहाँ पर एक आदमी इसके बाल को काट रहा है और पीछे की तरफ आदमी समान को धो रहा है।

और लोहै के इस तरफ में आधा छत बन चुका है उस तरफ में आधा छत बन चुका है। और उसके दाएं तरफ से लोग सब सीमेंट का सामान को उठा रहे हैं।

जिसके पीछे में एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है। मंदिर के सामने एक बड़े से एक गेट में एक ताला जो चैन से बांधा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

यहा पर कुछ अ सितार और कुछ ढोलक और एक तानसेन भी रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीछे वाला आदमी के हाथ में एक घंटा भी दिखाई पड़ रहा है।